एक रेस्टोरेंट दिखाई पड़ रही है।

मैं देख सकती हूं एक टेबल भी दिखाई दे रही हैैं।

एक मूर्ति भी नजर आ रही है।